वो ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रही है।

वायर भी दिखाई दे रही है घर भी दिख रहा हैं।

यहां पर लोहे के रैक दिखाई दे रहे हैं रैक में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

और सिडिया भी दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रही है। बिजली की तारे दिखाई दे रहे हैं। आसमान दिखाई दे रहा है।